लकड़ी दिख छे धागा दिख रहा छे --

पानी दिख रहे छे बोर्ड दिख रहे छे --

खंभा दिख रहा छे लाइटा दिख रही छे --